और कुछ डंडे लगे हुए हैं जो की जॉइन्ट हैं।

एक पत्थरों से बनाया उ पत्थर से बना हुआ चट्टान है जिसमे एक लड़का खड़ा है जिसने पिंक व्हाइट और ब्लैक कलर की टी-शर्ट पेहनी है ब्लैक कलर की पेंट पेहनी है।

कुछ काले कलर का पानी नज़र आ रहा हैं ऊपर पर्पल कलर का आसमान नज़र आ रहा है घास नज़र आ रही हैं।

जीन्स पेहना है ब्लू कलर का वाइट कोटी दूसरे अंकल ने येलो पैंट ब्लैक कोट पेहना हुआ हैं पीछे से एक मल्टी --

कुछ बाईकल्स बाइसिकल्स हैं और चार पांच दुकान हैं जिनके तीन के शटर ओपन किये गए हैं और तार नजर आ रही है ऊपर से --

यह एक ब्रिज ब्रिज के निचे कुछ ब बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड ग्री इअ यलो और ब्लू कलर का है। एक आदमी है की जो की जा रहा है। थोड़ा बोहत आसमान नज़र आ रहा है। साइकल्स --

यह एक जिम है इस जिम में एक आदमी है जो की सेल्फी ले रहा है बॉडी बना रहा है ग्रीन कलर का कार्पेट है।

यहाँ पर दो मल्टियाँ हैं एक सैलून ओपन हुआ है जिसमे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं मोटरसाइकिले है ब्लू और वाइट कलर के गुब्बारों से--

चौक वी करके एक आदमी ने शेप बनाया हुआ है उंगली का एक आंटी है ऑरेंज साड़ी में एक अंकल लेकर जा रहे हैं एक साइड पे कुछ ब्लैक कलर का स्पीकर जैसा है नीचे एक दुकान लगी हुई है।

यहाँ एक गार्डन है गार्डन में एक झूला लगा हुआ है और घास नहीं है सुखम जगह है ऊपर से पत्ते नज़र आ रहे हैं जो ये बच्चा है झूला झूल रहा है।

यह एक शॉप है जो कि सैलून की है उसमे कांच लगा हुआ है रेड एण्ड ब्लैक कलर का डेकोरैशन के साथ।

पुरा बोर्ड बना हुआ है पास में जो शॉप है वो बंध रखी हुई हैं।